मुझे इस फोटो में एक नदी दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में बहोत सारी गाड़िया दिखाई दे रही है।